इसके साइड में चार कुर्सियां पड़ी है दो कुर्सियां भूरे रंग की है और दो कुर्सियां सफेद रंग की है।

एक आदमी सामने हाथ में कुछ लेके खड़ा हुआ है जिसने नीला रंग की शर्ट पहन रखी है।

यहां पे सड़क है कुछ आदमी बाइक्स लेके जा रहे हैं।

जिसमें बहोत सारी लाइटें लगी हुई हैं। बहोत सारे तार लगे हुए हैं। आसमान नीले नीले नीले रंग का बहोत सुंदर दिख रहा है।

एक रूम है यहां पे कुछ टंगा हुआ है कुछ रखा हुआ है।

यहां पर गाड़ी खड़ी हुई है उसके पास में बाइक भी खड़ी है।

उनके सामने बहुत सारे पोस्टर्स लिखे हुए हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है और हरियाली भी अच्छी है यहां पर।

इसके साथ उसके पास में एक पेट्रोल टंकी है।

और यहां पे भी चटाई बिछी है हरे रंग की है बहुत सारे पेड़ पौधे हैं बहुत सारे घर बने हुए हैं।

जिसने ए हरे रंग की टी शर्ट पहन रखी है एक आदमी ने सफेद रंग की टी शर्ट पहन रखी है।

ये एक मस्जिद है जहां पर कुछ आदमी नमाज पढ़ रहे हैं।

आदमी और औरतें दोनों हैं पीछे बहोत सारे घर बने हुए हैं।

उसके ठीक सामने कुछ आदमी बहुत सारे आ जा रहे है।

ठीक साइड में आदमी जहां पे खड़े हुए हैं वहां पे कुत्ता भी लेटा हुआ है बेचारा।

यहां पे एक ट्रक है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है।

पेड़ भी लगे हुए हैं और एक खम्भा लगा हुआ है जिसपे एक पोस्टर भी रखा हुआ है।

कुछ डिब्बे लाल रंग के कुछ डिब्बे पीले रंग के और कुछ भूरे रंग के हैं।

डिब्बो के ऊपर पास शायरी ड्राइंगस बनी हुई है।

एक मेडिकल स्टोर है जिसका नाम है जय मेडिकल स्टोर ।

इसके पास में पेड़ लगा हुआ है और के नीचे पानी भरा हुआ है जो की देखने में बहोत सुंदर लग रहा है।

आसपास दो पोस्टर लगे हुए हैं जो जल रहे हैं।

उसके ठीक सामने एक खंभा लगा हुआ है जिस पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

इसमें लाल रंग और नीले रंग की पुताई करी है।

ये कुछ पेड़ है जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहे है।